और ये हर स गांव में दुकान होत --

श्री आदर्श मेहता संस्कृत माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय ये सोरो शुक्र क्षेत्र जनपद काशगंज में है।